यहां पे देखिएगा फ्रेंड यहां पर एक रोड दिख रही है और कई सारे कारे खड़ी है यहां पर कारे खड़ी हुई दिख रही है।

जहां पे लिखा हुआ है चित्र मंत्रालय आयकर विभाग।

और पास में कुछ क्रीमंस वगैरह भी दिखाई दे रही हैं।

और काफी बड़ा पार्क है ये यहां पर कुर्सी टेबल दिख रहे हैं काफी सारे पेड़ दिख रहे हैं।

और कुछ पेड़ दिख रहे हैं यहां पर और कुछ पौधे भी लगे हुए हैं क्यारी में और सड़क दिख रही हैं।

एक हॉस्पिटल दिख रहा है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है आर_एन मल्टी स्पेशी ली लिटी हॉस्पिटल ।

एक व्यक्ति है जिसने मास्क लगा रखा है और ब्लू कलर की डार्क ब्लू कलर की टी शर्ट पहने हुआ है।

और बीच में सड़क दिखाई दे रही हैं रोड दिखाई दे रही हैं जिसपर दो लोग दिख रहे हैं और गमले दिख रहे हैं यहाँ पर --

कुछ पुरुषों जो कि नीचे बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं।

इस पिक्चर में देखिएगा यहां पर एक अह मॉल दिख रहा है जहां पर कई सारे चीजें रखी है पैकेट्स में।